यहा पर एक चैर खडी हे मुट की सारी चैर है यहाँ पर एक कूलर है यहाँ पर ए सी लगी हुई है यहाँ पर पोस्टर लगे हुए है यहाँ पर दो आदमी है और एक महिला हे और यहाँ--